दो लोग खड़े है जो कि रेड कलर का शर्ट और ब्लैक ब्लू कलर का पैंट पहने हुए है दूसरा ब्लैक कलर का--

ये तस्वीर एक मॉल की है जिसमे की बहुत सारे समान रखे हुए है खाने पीने के समान रखे हुए है बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है और बैनर लगा हुआ है एक अह एक अह अं--

इस तस्वीर मे बहोत उची बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की तीन मंजीला हा कोई चार मंजीला है बिल्डिंग और बिल्डिंग के आगे बहोत सारे इठे रखे हुए है।

इस तस्वीर में एक गेट को बोहोत से फूलोसे सजाया गया है गेट के बहार एक आदमी खड़ा है जो ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है गेट की सीडी सीडी लगी हुई है जिसपे रेड कलर की कालीन बिछी हुई है और खि सीडी --

और अम्म इस तस्वीर मे और येल्लो कमर कलर के इमेज मे रखे हुई --

और एक है और बहुत सारे फूल छोटे छोटे दिखाई--